ये काफी अच्छा मेहनत कर रहा है और एक दूसरा आदमी इसका पेट है वो बनियान पहन के इसको देख रहा है ताकि वह भी अपनी बॉडी इसकी तरह बना सके।

इसके के बाहर खड़ा हुआ है और ये आजकल इंडियन पोस्ट ऑफिस के भी ए_टी_एम कार्ड आए हुए है तो अब ए_टी_एम का सही सुविधा ले सकते है।

बाल कटा रहे है दाढ़ी बना रिया तो यहा पर काफी सारे कास्टूम याने कॉस्मेटिक भी है जैसे कि फेस्वाश वगैरा और फेस क्रीम फेस ग्लो हो जाता है।

इसमें खेल रहे हैं तो ये एक छोटा सा पार्क है और बहुत बढ़िया है तो यहा पे आप अपना समर वैकैशन बना--

नमस्कार आप जैसे देख सकते हैं एक छोटीसी नन्ही सी गुड़िया हैं और ये--

गुड़िया जो है एक गार्डन में खड़ी है जहाँ पर गेंदे के फूल है और एक्साक्टली उसके पीछे आप देख सकते हैं।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

और आप यह भी देख सकते हैं कि यह मिट्टी की कच्ची रोड है और यह पार्किंग है तो बैंक बंद--

नमस्कार आप जैसे देख सकते है की यह एक गोल गोल घुमनेवाली जैसे-- जॉइंट व्हील होती है वैसे ही है और इसमे बच्चे काफी मजे से बैठे हुए है बच्चे क्या यहा तो बड़े भी बैठे हुए है।

नमस्कार आप देख सकते है कि यहाँ पे नया उद्घाटन हो रहा है जो है हेयर एक्सपर्ट प्रोफेशनल सलून का और यह ही वह लोग है इसके ओनर है।